फूल के पौधे रखे हुए है एक आदमी खड़ा है जोकि दूसरे आदमी से बात कर रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक सत्संग घर है इसके बाहर कई सारे हरे-हरे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इसमें कई सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

जैसा की में देख पा रही हू यह एक चर्च है इसमें कही सारे महिलायें वा पुरुष --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक भूरे रंग की गाड़ी है।

लिखे हुए हैं जैसे गुलाबी लाल पीला हरा नीला और कई सारे हरे पेड़-पौधे भी हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बाहर--

खड़े हैं सभी ने अलग-अलग रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं जैसे काला सफेद--

जैसा कि मैं देख पा रही हूं इसमें कई महिलाएं पुरुष व बच्चे हैं।

झूले भी हैं और इसमें कई सारे लोग भी हैं सभी ने अलग-अलग रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं।